सामने दिखाई दे रहा है यह में कई सारे म्यूजिक के सामान रखे हुए है हेलमेट भी रखे हुए है।

वहाँ ढोलक भी रखा हुआ है वहाँ म्यूजिक भी रखा हुआ है और ढोलक और हैलमेट और कई सारी प्लेट्स और बैग्स इत्यादि रखे हुए है।

इसमे कई सारे बच्चे स्विमिंग पूल कर रहे है और कई सारे व्यक्ति भी स्विमिंग पूल कर रहे है।

इनमें हमें कई सारी बकरियां दिखाई दे रही हैं जो के हरी भरी घांस के बीच में बैठी हुई हैं तथा इस ज़मीन में बहुत सारे प्लांट भी किया गया है छोटे व बड़े पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने हमे तीन मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। मूर्तियों के पीछे वो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है जो की वो भूरे कलर से पेंटिंग है तथा बिल्डिंग मैं बड़ा सा गेट लगा हुआ है ज--

और दूर पर पहाड़ भी दिखाई दे रहे है तथा बहुत सारे हरे भरे पेड़ पोधे भी बड़े बड़े पेड़ पोधे भी दिखाई दे रहे हैं।

और बहुत सारे व्यक्ति जिम बिल्डिंग के जिम जिम वाले सामान पर जिम करते हुए नजर आ रहे है और इस पर बड़ी-बड़ी लाइट्स भी लगी हुई है जो कि अत्यंत बड़ी है।